खा रही हैं और बहोत सारी घास फूस भी पड़ी हैं दो हिरन पास पास खड़े हैं और पीछे और तीन हिरन भी दिखाई दे रहे हैं।

कई तरह की चश्मा है ऊपर ब्लैक कलर की पड़ी है नीचे नीले कलर की और वाइट कलर की --

मैं इस दृश्य में सब लड़कियां ही हैं।

बड़े खंभे औ के तार हैं और पास में बहुत सारी हरियाली है बहुत बड़ी बड़ी पेड़ भी हैं छोटे भी हैं और--

और ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है।